यह तस्वीर किसी बंगले या फिर किसी फैक्ट्री की है इस पे बहुत अच्छा डिज़ाइन हो रहा है।

इस तस्वीर में एक पुल पुल पे दो बाइक एक आदमी एक हैल जिसने हैलमेट पहना हुआ है चार-पांच पिलर वाला--

ये एक आंध्र बैंक और सैमसंग ए_टी_एम की नीचे की सामने की जगह है इसके ऊपर एक पीले कलर की दीवार है और इस पिक्चर में कुछ तर भी आ रहे है।

इसमें कुछ बाइक के शीशे और आगे का हिस्सा दिखाई दे रहा है एक ग्रिल है छत पर जाल लगा हुआ है और कांच के गेट हैं इत्यादि सब दिखाई दे रहा है।

यह एक ब्रिज की तस्वीर है जोकि एक नदी के ऊपर बना हुआ है इस ब्रिज पे बहुत सारे वाहन आते जाते दिखाई दे रहे हैं।